यह विद्यालय हमारे सारण में है यह विद्यालय --

काफी पुरानी हो चुकी है यह खँडहर बहुत ही टूटी फूटी है यह खँडहर के ऊपर --

यहाँ पर बहुत सारे रंग-बिरंगे लड़के लड़की लेडीज जेंट्स --

यह पक्षियां रंग-बिरंग के है यहाँ पर ये पक्षियों को खाना दिए जाते है।

एक यह एक बस स्टेशन है यह बस स्टेशन काफी बड़ा है।

मंदील है। यह मंदील काफी बड़ा है। इस मंदील में माँ साधने लिखे हुए है।

यह ट्रक काफी सुन्दर चिमचिमिया से सजे गये हैं यह ट्रक में कलश की भी चित्र है।

यह यह ट्रक में दोनों तरफ झंडा लगे हुए हैं यह ट्रक सफ़ेद कलर के हैं ।

यह सडक पर बहुत सारे झोपड़ी है। यह सड़क किनारे बहुत सारे झोपड़ीया है।

यहाँ पर बहुत सारे मेकअप करने के सामान भी रखे गये है यह जगह पर --